मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
साल 2018 ख़त्म होने वाला है
हम 2019 में प्रवेश करने वाले हैं
स्वाभाविक रूप से ऐसे समयबीते वर्ष की बातें चर्चा में होती हैं तो आने वाले वर्ष के संकल्प की भी चर्चा सुनाई देती है
चाहे व्यक्ति का जीवन हो समाज का जीवन हो राष्ट्र का जीवन हो हर किसी को पीछे मुड़कर के देखना भी होता है और आगे की तरफ जितना दूर तक देख सकेंदेखने की कोशिश भी करनी होती है और तभी अनुभवों का लाभ भी मिलता है और नया करने का आत्मविश्वास भी पैदा होता है
हम ऐसा क्या करें जिससे अपने स्वयं के जीवन में बदलाव ला सकें और साथहीसाथ देश एवं समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें
आप सबको 2019 की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं
आप सभी ने सोचा होगा कि 2018 को कैसे याद रखा जाए
2018 को भारत एक देश के रूप में अपनी एक सौ तीस करोड़ की जनता के सामर्थ्य के रूप में कैसे याद रखेगा यह याद करना भी महत्वपूर्ण है
हम सब को गौरव से भर देने वाला है
2018 में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई
देश के हर गाँव तक बिजली पहुँच गई
विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को ग़रीबी से मुक्ति दिला रहा है
देशवासियों के अडिग संकल्प से स्वच्छता कवरेज बढ़कर के95 को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है
आजादी के बादलालकिले से पहली बार आज़ाद हिन्द सरकार की 75वीं वर्षगाँठ पर तिरंगा फहराया गया
देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टेच्यू ओएफ यूनिटी देश को मिली
दुनिया में देश का नाम ऊँचा हुआ
देश को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैम्पियंस ओएफ थे earthअवार्ड्स से सम्मानित किया गया
सौर ऊर्जा और क्लाइमेट चंगे मेंभारत के प्रयासों को विश्व में स्थान मिला
भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा इंटरनेशनल सोलार एलायंस का आयोजन हुआ
हमारे सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारे देश की ईज़ ओएफ डोइंग बिजनेस rankingमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है
देश के सेल्फ डिफेंस को नई मजबूती मिली है
इसी वर्ष हमारे देश ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा किया हैयानीअब हम जल थल और नभतीनों में परमाणुशक्ति संपन्न हो गए हैं
देश की बेटियों ने नाविका सागर परिक्रमा के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण कर देश को गर्व से भर दिया है
वाराणसी में भारत के पहले जलमार्ग की शुरुआत हुई
इससे वाटरवेज के क्षेत्र में नयी क्रांति का सूत्रपात हुआ है
देश के सबसे लम्बे रेलरोड पुल बोगीबील ब्रिज का लोकार्पण किया गया
सिक्किम के पहले और देश के 100वें एयरपोर्ट पाक्योंग की शुरुआत हुई
Under19 क्रिकेट विश्व कप और Blindक्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत दर्ज करायी
इस बार एशियन गेम्स में भारत ने बड़ी संख्या में मेडल जीते
Para एशियन गेम्स में भी भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है
वैसे यदि मैं हर भारतीय के पुरुषार्थ की हमारे सामूहिक प्रयासों की बाते करता रहूँ तो हमारा मन की बात इतनी देर चलेगा कि शायद 2019 ही आ जायेगा
यह सब 130 करोड़ देशवासियों के अथक प्रयासों से संभव हो सका है
मुझे उम्मीद है कि 2019 में भी भारत की उन्नति और प्रगति की यह यात्रा यूं ही जारी रहेगी और हमारा देश और मजबूती के साथ नयी ऊंचाइयों को छुयेगा
मेरे प्यारे देशवासियो इस दिसम्बर में हमने कुछ असाधारण देशवासियों को खो दिया
19 दिसम्बर को चेन्नई के डॉक्टर जयाचंद्रन का निधन हो गया
डॉक्टर जयाचंद्रन को प्यार से लोग मक्कल मारुथुवरकहते थे क्योंकि वे जनता के दिल में बसे थे
डॉक्टर जयाचंद्रन ग़रीबों को सस्तेसेसस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते थे
लोग बताते हैं कि वे मरीजों के इलाज के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे
अपने पास इलाज के लिए आने वाले बुजुर्ग मरीजों कोवोआनेजाने का किराया तक दे देते थे
मैंने thebetterindiacom websiteमें समाज को प्रेरणा देने वाले उनके अनेक ऐसे कार्यों के बारे में पढ़ा है
इसी तरह 25 दिसम्बर को कर्नाटक की सुलागिट्टी नरसम्मा के निधन की जानकारी मिली
सुलागिट्टी नरसम्मा गर्भवती माताओंबहनों को प्रसव में मदद करने वाली सहायिका थीं
उन्होंने कर्नाटक में विशेषकर वहाँ के दुर्गम इलाकों में हजारों माताओंबहनों को अपनी सेवायें दीं
इस साल की शुरुआत में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था
डॉ जयाचंद्रन और सुलागिट्टी नरसम्मा जैसे कई प्रेरक व्यक्तित्व हैंजिन्होंने समाज में सब की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया
जब हम हेल्थ केयर की बातें कर रहे हैं तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डॉक्टरों के सामाजिक प्रयासों के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा
पिछले दिनों हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि शहर के कुछ युवा डॉक्टर कैंप लगाकर ग़रीबों का फ्री उपचार करतेहैं
यहाँ के हर्ट लंग्स क्रिटिकल सेंटर की ओर से हर महीने ऐसे मेडिकल कैंप लगाये जाते हैं जहाँ कई तरह की बीमारियों की मुफ्त जाँच और इलाज की व्यवस्था होती है
आज हर महीने सैकड़ों ग़रीब मरीज़ इस कैंप से लाभान्वित हो रहे हैं
निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटे इन डॉक्टर्स मित्रों का उत्साह सचमुच तारीफ़ के काबिल है
आज मैं यह बात बहुत ही गर्व के साथ बता रहा हूँ कि सामूहिक प्रयासों के चलते ही स्वच्छ भारत मिशन एक सफल अभियान बन गया है
मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक साथ तीन लाख से ज्यादा लोग सफाई अभियान में जुटे
स्वच्छता के इस महायज्ञ में नगर निगम स्वयं सेवी संगठन स्कूलकॉलेज के विद्यार्थी जबलपुर की जनताजनार्दन सभी लोगों ने बढ़चढ़ करके भाग लिया
मैंने अभी thebetterindiacom का उल्लेख किया था
जहाँ मुझे डॉ जयाचंद्रन के बारे में पढ़ने को मिला और जब मौका मिलता है तो मैं जरुर thebetterindiacomwebsite पर जाकर के ऐसी प्रेरित चीजों को जानने का प्रयास करता रहता हूँ
मुझे ख़ुशी है कि आजकल ऐसी कई वेबसाइट हैंजो ऐसे विलक्षण लोगों के जीवन से प्रेरणा देने वाली कई कहानियों से हमें परिचित करा रही है
जैसे thepositiveindiacom समाज में पॉजिटिविटी फ़ैलाने और समाज को ज्यादा संवेदनशील बनाने का काम कर रही है
इसी तरह yourstorycom उस पर यंग इनोवेटर्स और उद्यमियों की सफलता की कहानी को बखूबी बताया जाता है
इसी तरह samskritabharatiin के माध्यम से आप घर बैठे सरल तरीके से संस्कृत भाषा सीख सकते हैं
क्या हम एक काम कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट के बारे में आपस में शेयर करें
पॉजिटिविटी को मिलकर विरल करें
मुझे विश्वास है कि इसमें अधिकसेअधिक लोग समाज में परिवर्तन लाने वाले हमारे नायकों के बारे में जान पाएँगे
Negativity फैलाना काफी आसान होता है लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और ये सब 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से हो रहा है
हर समाज में खेलकूद का अपना महत्व होता है
जब खेल खेले जाते हैं तो देखने वालों का मन भी ऊर्जा से भर जाता है
खिलाड़ियों को नाम पहचान सम्मान बहुत सी चीज़ें हम अनुभव करते हैं
लेकिन कभीकभी इसके पीछे की बहुतसी बातें ऐसी होती हैं जो खेलविश्व से भी बहुत बढ़ करके होती है बहुत बड़ी होती है
मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने कोरिया में करते चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है
हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है
हनाया ने मेहनत और लगन से करते का अभ्यास किया उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया
मैं सभी देशवासियों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ
हनाया को ढ़ेर सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद
वैसे ही 16 साल की एक बेटी रजनी के बारे में मीडिया में बहुत चर्चा हुई है
आपने भी जरुर पढ़ा होगा
रजनी ने जूनियर महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप मेंगोल्ड मेडल जीता है
जैसे ही रजनी ने पदक जीता वह तुरंत पास के एक दूध के स्टॉल पर गई और एक गिलास दूध पिया
इसके बाद रजनी ने अपने पदक को एक कपड़े में लपेटा और बैग में रख लिया
अब आप सोच रहे होंगे कि रजनी ने एक गिलास दूध क्यों पिया उसने ऐसा अपने पिता जसमेर सिंह जी के सम्मान में किया जो पानीपत के एक स्टॉल पर लस्सी बेचते हैं
रजनी ने बताया कि उनके पिता ने उसे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत त्याग किया है बहुत कष्ट झेले हैं
जसमेर सिंह हर सुबह रजनी और उनके भाईबहनों के उठने से पहले ही काम पर चले जाते थे
रजनी ने जब अपने पिता से बॉक्सिंग सीखने की इच्छा जताई तो पिता ने उसमें सभी संभव साधन जुटा कर उसका हौसला बढ़ाया
रजनी को मुक्केबाजी का अभ्यास पुराने ग्लोव्स के साथ शुरू करना पड़ा क्योंकि उन दिनों उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी
इतनी सारी बाधाओं के बाद भी रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और मुक्केबाजी सीखती रही
उसने सर्बियामें भी एक पदक जीता है
मैं रजनी को शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देता हूँ और रजनी का साथ देने और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकेमातापिता जसमेर सिंह जी और उषारानी जी को भी बधाई देता हूँ
इसी महीने पुणे की एक 20 साल की बेटी वेदांगी कुलकर्णी साइकल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गयी हैं
वह 159 दिनों तक रोजाना लगभग 300 किलोमीटर साइकल चलाती थी
आप कल्पना कर सकते हैं प्रतिदिन 300 किलोमीटर साइक्लिंग साईकिल चलाने के प्रति उनका जुनून वाकई सराहनीय है
क्या इस तरह की अचीवमेंट्स ऐसी सिद्धि के बारे में सुनकर हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती
ख़ासकर के मेरे युवा मित्रों जब ऐसी घटनाएँ सुनते हैं तब हम भी कठिनाइयों के बीच कुछ कर गुजरने की प्रेरणा पाते हैं
अगर संकल्प में सामर्थ्य है हौसले बुलंद हैं तो रुकावटें खुद ही रुक जाती हैं
कठिनाइयाँ कभी रुकावट नही बन सकती हैं
अनेकऐसे उदाहरण जब सुनते हैं तो हमें भी अपने जीवन में प्रतिपल एक नयी प्रेरणा मिलती है
मेरे प्यारे देशवासियों जनवरी में उमंग और उत्साह से भरे कई सारे त्योहार आने वाले हैं जैसे लोहड़ी पोंगल मकर संक्रान्ति उत्तरायण माघ बिहू माघी इन पर्व त्योहारों के अवसर पर पूरे भारत में कहीं पारंपरिक नृत्यों का रंग दिखेगा तो कहीं फसल तैयार होने की खुशियों में लोहड़ी जलाई जाएगी कहीं पर आसमान में रंगबिरंगी पतंगे उड़ती हुई दिखेंगी तो कहीं मेले की छठा बिखरेगी तो कहीं खेलों में होड़ लगेगी तो कहीं एकदूसरे को तिल गुड़ खिलाया जायेगा
लोग एकदूसरे को कहेंगे तिल गुड घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला
इन सभी त्योहारों के नाम भले ही अलगअलग हैं लेकिन सब को मनाने की भावना एक है
ये उत्सव कहींनकहीं फसल और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं किसान से जुड़े हुए हैं गाँव से जुड़े हुए हैं खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं
इसी दौरान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है
इसी के बाद से दिन धीरेधीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है
हमारे अन्नदाता किसान भाईबहनों को भी खूबखूब शुभकामनाएं
विविधता में एकता एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए हैं
हम देख सकते हैं हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं
भारतीय संस्कृति में समाज और प्रकृति को अलगअलग नहीं माना जाता
यहाँ व्यक्ति और समष्टि एक ही है
प्रकृति के साथ हमारे निकट संबंध का एक अच्छा उदाहरण है त्योहारों पर आधारित कैलेंडर
इसमें वर्ष भर के पर्व त्योहारों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का लेखाजोखा भी होता है
इस पारंपरिक कैलेंडरसे पता चलता है कि प्राकृतिक और खगोलीय घटनाओं के साथ हमारा संबंध कितना पुराना है
चन्द्रमा और सूर्य की गति पर आधारित चन्द्र और सूर्य कैलेंडरके अनुसार पर्व और त्योहारों की तिथि निर्धारित होती है
ये इस पर निर्भर करता है कि कौन किस कैलेंडरको मानता है
कई क्षेत्रों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भी पर्व त्योहार मनाये जाते हैं
गुड़ी पड़वा चेटीचंड उगादि ये सब जहाँ चन्द्र कैलेंडरके अनुसार मनाये जाते हैं वहीँ तमिल पुथांडु विषु वैशाख बैसाखी पोइला बैसाख बिहु ये सभी पर्व सूर्य कैलेंडरके आधार पर मनाये जाते हैं
हमारे कई त्योहारों में नदियों और पानी को बचाने का भाव विशिष्ट रूप से समाहित है
छठ पर्व नदियों तालाबों में सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है
मकर संक्रान्ति पर भी लाखोंकरोड़ों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं
हमारे पर्व त्योहार हमें सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं
एक ओर जहाँ इनका पौराणिक महत्व है वहीं हर त्योहार जीवन के पाठ एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने की प्रेरणा बड़ी सहजता से सिखा जाते हैं
मैं आप सभी को 2019 की बहुतबहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आने वाले त्योहारों का आप भरपूर आनन्द उठाएँ इसकी कामना करता हूँ
इन उत्सवों पर ली गई फोटोस को सबके साथ शेयर करें ताकि भारत की विविधता और भारतीय संस्कृति की सुन्दरता को हर कोई देख सके
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी संस्कृति में ऐसी चीज़ों की भरमार है जिनपर हम गर्व कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अभिमान के साथ दिखा सकते हैं और उनमें एक है कुंभ मेला
आपने कुंभ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा
फ़िल्मों में भी उसकी भव्यता और विशालता के बारे में काफी कुछ देखा होगा और ये सच भी है
कुंभ का स्वरूप विराट होता है जितना दिव्य उतना ही भव्य
देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं
कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है
एक साथ एक जगह पर देशविदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं
कुंभ की परम्परा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है
इस बार 15 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला जिसकी शायद आप सब भी बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे
कुंभ मेले के लिए अभी से संतमहात्माओं के पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ भी हो चुका है
इसके वैश्विक महत्व का अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि पिछले वर्ष यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ओएफ ह्यूमैनिटी की सूची में चिन्हित किया है
कुछ दिन पहले कई देशों के राजदूत ने कुंभ की तैयारियों को देखा
वहाँ पर एक साथ कई देशों के राष्ट्रध्वज फहराए गए
प्रयागराज में आयोजित हो रहे इस कुंभ के मेले में 150 से भी अधिकदेशों के लोगों के आने की संभावना है
कुंभ की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरेगी
कुंभ मेला सेल्फ discoveryका भी एक बड़ा माध्यम है जहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अलगअलग अनुभूति होती है
सांसारिक चीज़ों को आध्यात्मिक नज़रिए से देखतेसमझते हैं
खासकर युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है
मैं स्वयं कुछ दिन पहले प्रयागराज गया था
मैंने देखा कि कुंभ की तैयारी ज़ोरशोर से चल रही है
प्रयागराज के लोग भी कुंभ को लेकर काफी उत्साही हैं
वहाँ मैंने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया
श्रद्धालुओं को इससे काफी सहायता मिलेगी
इस बार कुंभ में स्वच्छता पर भी काफी बल दिया जा रहा है
आयोजन में श्रद्धा के साथसाथ सफाई भी रहेगी तो दूरदूर तक इसका अच्छा संदेश पहुंचेगा
इस बार हर श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के बाद अक्षयवट के पुण्य दर्शन भी कर सकेगा
लोगों की आस्था का प्रतीक यह अक्षयवट सैंकड़ों वर्षों से किले में बंद था जिससे श्रद्धालु चाहकर भी इसके दर्शन नहीं कर पाते थे
अब अक्षयवट का द्वार सबके लिए खोल दिया गया है
मेरा आप सब से आग्रह है कि जब आप कुंभ जाएं तो कुंभ के अलगअलग पहलू और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि अधिकसेअधिक लोगों को कुंभ में जाने की प्रेरणा मिले
अध्यात्मका ये कुंभ भारतीय दर्शन का महाकुंभ बने
आस्था का ये कुंभ राष्ट्रीयता का भी महाकुंभ बने
राष्ट्रीय एकता का भी महाकुंभ बने
श्रद्धालुओं का ये कुंभ वैश्विक टूरिस्टों का भी महाकुंभ बने
कलात्मकता का ये कुंभ सृजन शक्तियों का भी महाकुंभ बने
मेरे प्यारे देशवासियो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर हम देशवासियों के मन में बहुत ही उत्सुकता रहती है
उस दिन हम अपनी उस महान विभूतियों को याद करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया
इस वर्ष हम पूज्य बापू का 150वाँ जयन्ती वर्ष मना रहे हैं
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामाफोसा इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत पधार रहे हैं
पूज्य बापू और दक्षिण अफ्रीका का एक अटूट सम्बन्ध रहा है
यह दक्षिण अफ्रीका ही था जहाँ से मोहनमहात्माबन गए
दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरम्भ किया था और रंगभेद के विरोध में डटकर खड़े हुए थे
उन्होंने फीनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म्स की भी स्थापना की थी जहाँ से पूरे विश्व में शान्ति और न्याय के लिए गूँज उठी थी
2018 नेल्सन मंडेला के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है
वे मड़ीबा के नाम से भी जाने जाते हैं
हम सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला पूरे विश्व में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष की एक मिसाल थे और मंडेला के प्रेरणास्रोत कौन थे उन्हें इतने वर्ष जेल में काटने की सहनशक्ति और प्रेरणा पूज्य बापू से ही तो मिली थी
मंडेला ने बापू के लिए कहा था महात्मा हमारे इतिहास के अभिन्न अंग है क्योंकि यहीं पर उन्होंने सत्य के साथ अपना पहला प्रयोग किया था यहीं पर उन्होंने न्याय के प्रति अपनी दृढ़ता का विलक्षण प्रदर्शन किया था यहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह का दर्शन और संघर्ष के तरीके विकसित किये
वे बापू को रोल मॉडल मानते थे
बापू और मंडेला दोनों पूरे विश्व के लिए ना केवल प्रेरणा के स्रोत हैं बल्कि उनके आदर्श हमें प्रेम और करुणा से भरे हुए समाज के निर्माण के लिए भी सदैव प्रोत्साहित करते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पहले गुजरात के नर्बदा के तट पर केवड़िया मेंDGP conferenceहुई जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमास्टेच्यू ओएफ यूनिटी है वहाँ देश के शीर्ष पुलिसकर्मियों के साथ सार्थक चर्चा हुई
देश और देशवासियों की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए किस तरह के कदम उठाये जाएँ इस पर विस्तार से बात हुई
उसी दौरान मैंने राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की
यह पुरस्कार उनको दिया जाएगा जिन्होंने किसी भी रूप में राष्ट्रीय एकता के लिए अपना योगदान दिया हो
सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकता के लिए समर्पित कर दिया
वे हमेशा भारत की अखंडता कोअक्षुण्ण रखने में जुटे रहे
सरदार साहब मानते थे कि भारत की ताकत यहाँ की विविधता में ही निहित है
सरदार पटेल जी की उस भावना का सम्मान करते हुए एकता के इस पुरस्कार के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो 13 जनवरी गुरु गोबिंद सिंह जी की जयन्ती का पावन पर्व है
गुरुगोबिंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ
जीवन के अधिकांश समय तक उनकी कर्मभूमि उत्तर भारत रही और महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन्होंने अपने प्राण त्यागे
जन्मभूमि पटना में कर्मभूमि उत्तर भारत में और जीवन का अंतिम क्षण नांदेड़ में
एक तरह से कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ
उनके जीवनकाल को देखें तो उसमें पूरे भारत की झलक मिलती है
अपने पिता श्री गुरु तेगबहादुर जी के शहीद होने के बाद गुरुगोबिंद सिंह जी ने 9 साल की अल्पायु में ही गुरु का पद प्राप्त किया
गुरु गोबिन्द सिंह जी को न्याय की लड़ाई लड़ने का साहस सिख गुरुओं से विरासत में मिला
वे शांत और सरल व्यक्तित्व के धनी थे लेकिन जबजबग़रीबों और कमजोरों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया उनके साथ अन्याय किया गया तबतब गुरु गोबिन्द सिंह जी ने गरीबों और कमजोरों के लिए अपनी आवाज़ दृढ़ता के साथ बुलंद की और इसलिए कहते हैं
सवा लाख से एक लड़ाऊँ
चिड़ियों सों मैं बाज तुड़ाऊँ
तबे गोबिंदसिंह नाम कहाऊँ
वे कहा करते थे कि कमज़ोर तबकों से लड़कर ताकत का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता
श्री गोबिन्द सिंह मानते थे कि सबसे बड़ी सेवा है मानवीय दुखों को दूर करना
वे वीरता शौर्य त्याग धर्मपरायणता से भरे हुए दिव्य पुरुष थे जिनको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही अलौकिक ज्ञान था
वे एक तीरंदाज तो थे ही इसके साथसाथ गुरूमुखी ब्रजभाषा संस्कृत फारसी हिन्दी और उर्दू सहित कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे
मैं एक बार फिर से श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी को नमन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों देश में कई ऐसे अच्छे प्रकरण होते रहते हैं जिनकी व्यापक चर्चा नहीं हो पाती ऐसा ही एक अनूठा प्रयासFSSAI यानी फूड सेफटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ओएफ इंडिया द्वारा हो रहा है
महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं
इसी कड़ी में fssaआई सफे और हेल्थी डाइट हैबिट्स खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जुटा है
ईट राइट इंडिया अभियान के अन्दर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही हैं
ये अभियान 27 जनवरी तक चलेगा
कभीकभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरह होता है लेकिन यह सराहनीय है कि fssaआई इससे आगे बढ़कर जनजागृति और लोकशिक्षा का काम कर रहा है
जब भारत स्वच्छ होगा स्वस्थ होगा तभी भारत समृद्ध भी होगा
अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है पौष्टिक भोजन
इस सन्दर्भ में इस पहल के लिए fssaआई का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ
मेरा आप सबसे आग्रह है आइये इस पहल से जुडें
आप भी इसमें हिस्सा लें और खासकर मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों को जरूर ये चीज़ें दिखाएँ
खाने के महत्व की शिक्षा बचपन से ही आवश्यक होती है
मेरे प्यारे देशवाशियों 2018 का ये अंतिम कार्यक्रम है 2019 में हम फिर से मिलेंगे फिर से मन की बातें करेंगे
व्यक्ति का जीवन हो राष्ट्र का जीवन हो समाज का जीवन हो प्रेरणा प्रगति का आधार होती है
आइये नयी प्रेरणा नयी उमंग नया संकल्प नयीसिद्धिनयी ऊँचाई आगे चलें बढ़ते चलें खुद भी बदलें देश को भी बदलें
बहुतबहुत धन्यवाद